एक रूम है और यहां पे एक आदमी कपड़ा स्‍त्री कर रहा है और एक शर्ट को --

और तीन आदमी भी है और एक आदमी गिटार लेके खड़ा हुआ है और एक आदमी साइकिल चला रहा है देखने में दुकान वाकई में बहुत अच्‍छा लग रहा।

स्‍कूल है और यहाँ का गेट बहुत ही बड़ा है और गेट में कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे बहुत बडे-बडे जंजीर भी लगे हुए हैं और स्‍कूल बहुत ही बड़ा है बहुत बड़ा बिल्डिग है और यहाँ --

सब बात कर रहे हैं और यहाँ पे टेंट वैगरह भी टंगा हुआ है और यहाँ पे बहुत अच्‍छे से कुछ मनाया जा रहा है।

एक योगा क्‍लास है और यहाँ पे बहुत सारे लोग योगा करने आये हैं और नीचे लाल और ब्‍लू कलर का कारपेट भी है और खिड़की है। खिड़की सब खुला हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने मन से योगा कर रहें हैं और योगा करना बहुत ही अच्‍छी बात है।

और एक बच्चा बैठा हुआ है जो अपना

एक बहुत बड़ा हॉल है और यहाँ पे तीन आदमी हैं और बहुत ही अच्छे-अच्छे --

मंडप है और यहाँ पे बहुत अच्‍छा डेकोरेशन भी हुआ है और टेंट भी बहुत अच्‍छा लग रहा है टेंट का कलर रेड है और यहाँ पे बहुत अच्‍छी लाईट भी है और कुछ मूर्तियाँ भी है और ऊपर में मॉल जैसा कुछ बना हुआ है और हरा कलर का कारपेट भी है देखने में बहुत हीं अच्‍छा लग रहा है।

ऐसा कुछ है और बाहर का कुछ दिखाई दे रहा है और इधर बहुत सारे गढ्ढे भी हैं और बहुत बड़ा टीना का कुछ बना हुआ है और बीच में दीवार है और जंगल के जैसा कुछ है और बहुत सारे पेड़ पौधे भी है जहाँ पे कुछ गंदगी भी है।